जे हॉस्पिटल की बहोत सारी मशीने भी दिख रही है और खिड़किया भी दिख रही है और और मुझे यहाँ पे वाइट कलर का द दीवारे भी दिख रही है और कांच की अम्म इ खिड़किया भी दिख रही है और ये डस्टबिन भी मुझे मुझे दिख रहा है और टाइल्स भी लगी हुई मुझे दिख रही है।

अपर साइड ऑपरेशन हो रहा है वो मुझे दिख रहा है और डॉक्टर भी मुझे दिख रहे है और हरे कलर की ड्रेस वो भी पहने हुए दिख रहे है एक नीले कलर की पहनी हुई भी दिख रहा हैंऔर यहाँ पर कुछ रखा हुआ वो भी दिख रहा है।

यहाँ पर जिम वाले मशीने दिखाई दे रही है और ए मुझे यहाँ पर कुछ रखा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है दीवालो का पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर फेन लगा हुआ है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है।